इस दृश्यों की हमें एक--

देखने से यह तस्वीर हमें एक मशीन की ल--

देखने से यह तस्वीर--

हमें पेड़ भी नजर आ रही हैं।

हामें किसी दुकान का दृश्य लग--

इस दृश्यों में हमें दो--

ग्राउंड की नजर आ रही है।

कीड़ नजर आ रही है।

वाचिं ओर ढोल भी पकड़ी हुई है।

पीले और सफेद रंग की मशीन है।

उसके ऊपर नेस्स के--